इसमे एक मंदिर है जिसमे बल्ब जल रहा है कई लड्डू रखे हुए हैं।

पेड़ के गाछो से मीनार ढकी हुई है थोड़ी-सी और पान की दोकान है पीछे--